और साड़ियां है काफी कपड़े यहां पे फोल्ड करके रखे हुए हैं।

पार्क लिखा है। यहां दीवार के सड़क के किनारे पेड़ भी लगे हुए हरे भरे हैं। काफी बेटर लुक है इसका आप देख सकते हो।

हेलो गाइज देख सकते हो यहां पे फोर व्हीलर है और ये पाइप लगा हुआ है पाइप से पानी आ रहा है।

एक वहां पे मकान भी है जो स्कूल या कुछ भी हो सकता है वो बड़ा सा है।

और दीवार में काफी सारे फ्रेम टंगे हुए है ए_सी लगी हुई है।

हेलो गाइस आप देख सकते हैं ये ऑफिस है यहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है और काफी ढे ढेर सारे यहां पे पेपर्स रखे हुए हैं।

हेलो गाइस यह मॉल है और मॉल के अंदर यहां पे एक बच्चा यहां पे स्केटिंग लेके घूम रहा है।

हेलो गाइस आप देख सकते हो यहां पे एक बोर्ड लगी हुई है जिसमें लिखा है गुरुनानक वैष्णु डाबा।

क्रोसिन दवा का टैबलेट भी छपा हुआ है वेस्टर्न मेडिकल स्टोर ये मेडिकल स्टोर है।

और बाइक है और यहां पे लाइट है लगा हुआ है शाम का टाइम है मंदिर के ऊपर यहां पे--

आप देख सकते हों यहां ये बाइक खड़ी करने वाली--

यहां जिम है यहां पे काफी लाइट दिख रही है और मशीन भी काफी तरह-तरह के मशीन भी है जिम में जाने का।

कुर्सी है और यहां पे ब्लैक एंड येलो कलर का इधर बैठने के लिए बना है ब्लैक और येलो में ट्रैक्टर का टायर भी है उधर में--

हेलो गाइस देख सकते हैं काफी बड़ा मंजिल है और ये बिल्डिंग बड़ा है।

एक चबूतरा जैसे बनी है सीमेंट की और आजू बाजू सूखे घास है और घर के सामने फुल है।

व्हाइट कलर का इसका दीवार है। लाइट जल रही है यहां पे।

एफ ट्वेंटी भी है ऊपर गाड़ी बना हुआ है।

हम देख सकते हैं रूम है और रूम के अंदर काफी सारे टेबल यहां पे दिख रहे हैं सी_सी_टी_वी लगी हुई हैं।

की दीवार है। व्हाईट कलर का फर्स है इसका। येलो कलर में मशीन है।

हेलो गाइस ये छोटी सी झील है झील के चारों तरफ पहाड़ी इलाका दिख रहा है।

और बीच में छोटा सा पुल है पुल के ऊपर वृक्ष है।

ऊपर असमान दिख रहें हैं और चारों तरफ कलरफुल भीं दिख रहा हैं।